और नीचे की साइड में कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं जो अभी बनाए जा रहे हैं।

और पीछे बिजली की फंटी दिखाई दे रही है और इसमें लाइट जलती हुई दिख रही दे रही है।

एक बाल्टी रखी हुई है नीचे कुछ लड़की के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक टाइल मार्बल की दुकान दिखाई गई है।

इस फोटो के अंदर सामने की तरफ एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

साइड में एक मेट्रो मयूर खड़ी है और पीछे दीवार पर एक पेंटिंग लगी दिखाई दे रही है।

साइडों में एक बैनर चिपका हुआ है जिसपर कुछ लिखा हुआ है और एक कैमरा भी लगा हुआ है।

और साइड में एक बिल्डिंग है जिस पर लाल कलर है और पीले कलर का बॉर्डर लगा हुआ है।

फोटो के अंदर सामने एक शादी का मंडप दिखाया गया जिसमें सामने एक औरत और एक आदमी खड़ा है।

पीछे कुछ लड़की खड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है।

और इन रैपो के अंदर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और नीचे कुछ कपड़े रखे हुए जो पन्नी में पैक हैं।

फोटो के अंदर सामने एक बड़ी सी अलमारी बनी हुई है जो लकड़ी की है और इसमें छोटे छोटे रैक बनी हुई है।

साइडो में कुछ रेलिंग लगी हुई है जो पाइपों की बनी हुई है और पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।